ब्रैंड्स रखे हुए है कुछ मिठाइयां रखी है लॉलिपॉप रखे हुए है और वेट मशीन भी रखी हुई है तरह तरह की मिठाई है।

अह कुछ सिंक के कलर व्हाइट है और कुछ रेड ।

और सामने भी एक आदमी दिख रहा है और ये स्टेशन लग रहा है मुझे।

ट्रे में बहुत सारे फल रखे हुए है।

लेडीज साड़ियां पहनी हैं और जेंट्स कुर्ते पहने हुए हैं।

इसमें रेड कलर की छत इसकी पेंट हुई है।

शादी में जेंट्स वाले कोट हैं टंगे हुए।